और सामने सूरज नहीं नजर आ रहा है।

और चट्टान के बीचो बीच पेड़ पौधे घास ये सब दिख रहे हैं।

एक आदमी सोया हुआ नजर आ रहा है।

पीछे एक कुर्सी लगा हुआ नजर आ रहा--

और एक पे रोशन रोडलाइंस लिखा हुआ दिख रहा है।

ऊपर आसमान नजर आ रहा है आसमान का कलर व्हाइट है।